है आस-पास पेड़ लगे हुए हैं। बादल दिख रहे हैं। आसमान दिख रहा है। आसमान का नीला रंग दिख रहा है। बादलों का सफ़ेद रंग दिख रहा है।